एंटीसेपटिक बैठोबा एरियल के पाउच श्रेमिक्स ।

ट्यूब टायर वगैरह का कुछ है ।

दस-बारह लोग यानी शादिके लोग कैमरे को मेरा वाले खड़े है ।

फोटो वोटो खींच रहे हैं ।

एक दो आदमें बैठ हैं और एक आदमें और जो अभी-अभी हमें पुक्ता सबुत के खाल पेश हुआ है ।

वेर थ्री रोड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट एंड बिहाइंड लाई --

एक कुर्छी में से ना डबा डबा से थी ।

दुंगरगड में भी मन्दिर इसे के जैसा है ।

आदमी खडा हे स्प्लेंडर के उपर और दो लड़कियाँ हैं जो सेल्फी खींच रही हैं सेल्फी के लिए इनके हाथ में मोबाइल हे एक --

पूल उसका गट तेज बना है तेज के उपर तीन खटिया रखी है ।

सब कुछ है जो चाहिए वो मिलेगा ।

एक कैमरामैन है जो फोटो खींच रहा है मेरे हिसाब से एक इंजीनियर है वो ए --

आदमी ही आदमी खड़े हैं इधर चश्मे का स्टैंड --

हल्की लाइट लगी है ।

चार स्पुटी रखी है एक्टिवा बर्ग्मैन स्टेट एक्टिवा वन ट्वेंटी फाय और प्लेजर ।

कार वगैरा खड़ी है ।

हर टाइप के ये हैं काउंटर भी दिख रहा है हमको।